तस्वीर में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसने सफेद कलर की शर्ट एवं हेलमेट पहन रखा है।

और बैगनीज और सफेद रंग के फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

तस्वीर किसी लाइब्रेरी का है जहां हमे एक लंबा सा काउंटर बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें पार्टीशन की गई है।

और उसके सामने दो शख्स खड़े दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर किसी एयरपोर्ट के अंदर का है यहां सामने की ओर लगेज ट्राली ढेर सारी लगी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर की ओर एक शोकेस जैसा बना हुआ है जिसमें पारदर्शी शीशे लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक प्लेन दिखाई दे रहा है जो रनवे पर खड़ा है।

इसके बाहर टू व्हीलर गाड़िया कतार से खड़ी दिख रही है।

यहाँ कई सारे बुक कॉपी पेन इत्यादि चीजें रखी हुई नजर आ रही है।

एक व्यक्ति तथा एक महिला आगे की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां दो शख्स जिनमें से एक ने अपने सर पर गमछा बांध रखा है वह इस चीज को सजाता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक शख्स जिसने अपनी बाइक पर लाल कलर कपड़ा सा डब्बा बनवा रखा है वह उसे खोलकर खड़ा है।

तस्वीर किसी पेट्रोल पंप के बाहर की है जहां हमें भारत पेट्रोलियम का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एवं डिजाइन दार अलग अलग प्रजाति वाले पौधे भी जमीन पर लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक शख्स नजर आ रहा है जिसने मल्टी कलर वाली हाफ टी शर्ट पहन रखी है।

तथा यहाँ कपड़े पसारने के लिए रस्सी की सहायता से एक क्लॉथ होल्डिंग बनाया गया है जिस पर कपड़े डाले गए हैं।

तथा यहां कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुरुष के दाहिनी ओर एक पुतला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर किसी रेस्टोरेंट का है जहाँ हमे सामने की ओर एक काउंटर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और उसके ऊपर पीले रंग के अक्षर से चाट अड्डा लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एवं इस पर सफेद रंग के अक्षर से डी_एस_पी सोडा एंड कॉफी शॉप लिखा हुआ है।

यहां प्लास्टिक की कुर्सी तथा टेबल मौजूद हैं जिन पर कुछ लोग बैठे हुए हैं एवं कुछ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पिलर को लाल कलर के रंग से रंगा गया है एवं सेज पर सफेद कलर की लाइटें जलती हुई दिखाई दे --

यहां कई सारे टोकरियां फेंकी हुई दिखाई दे रही है तथा कुछ औजार जिनमें कुदार फावड़ा इत्यादि हैं वह रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक हाल जैसा दिख रहा है जिसकी दीवारों एवं सीलिंग पर सफेद कलर की पेंट की गई है।

यहां सामने की ओर हमें कई सारे अलग अलग प्रकार के चीजें रस्सी की सहायता से टांगी हुई दिखाई दे रही है।